तो दूसरी कुर्सियो का रंग सफ़ेद कलर का है और उसमे कुछ लेडीसे भी बैठे हुई हैं जो कुछ खा रहीं हैं |

ये एक चित्र है और इस चित्र में एक लड़की खड़ी हुई है जो कि नृत्य डांस कर रही है जिसकी जो की सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है जिसमे मेहंद कलर का पल्ला लगा हुआ है।

और काफी सुन्दर दिख रही है और उसकी गले में लम्बी सी माला डली हुई है।

यह एक चित्र है और इस चित्र में बहोत बड़ा खुला मैदान सा दिख रहा है जिसमें--